कार ऑटो ओर बाइक वगैरा बहुत सारे ट्राफिक में खड़े हुए हैं कुछ --

यहा पर एक तालाब है और यहा पर बहुत सारी बोट वगेरा रखी हुई है नाव रखी हुई है और कुछ पथरीली एरिया है यहा पे पहाड़ियां वगैरा है।